टेबल के बगल में हमें यहां पे डस्टबिन देखने का मिल रहा है। डस्टबिन के साइड में हमें एक बेड देखने को मिल रहा है।

फोटो से ऊपर हमें एक माला लगा हुआ देखने को मिल रहा है। माला के पीछे हमें बहोत सारे नारियल देखने को मिल रहे हैं।

हमे यहां पर सामने मे एक बहोत बड़ा गारी दिखने को मिल रहा है गारी के साइड मे हमे पहिया देखने को मिल रहा है।

बहोत सारे देखने को मिल रहा है ते बाहर--

साइकिल के बगल में हमें सीढ़ी टाइप का वाइट कलर का देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर बहुत सा--

पिलर के बगल में हमें यहां पर सीमेंट बड़े बड़े पूल देखने को मिल रहे हैं जिसके ऊपर एक ड्रम रखा हुआ है।

एक लड़का देखने को मिल रहा है जिसके हाथ में हमें पानी का बोतल एक देखने को मिल रहा है उसपे--

मैट के बगल में हमें यहां पे टेबल देखने को मिल रहा है टेबल के बगल में हमें ऊपर में--

ऊपर में हमें एक छोटा सा बड़ा सा गोला का बैठने वाला बन देखने को मिल रहा है उसके ऊपर हमें कछुआ देखने को मिल रहा है।

पेड़ पौधे के बदल में हमें बड़ा सा पोल देखने को मिल रहा है।

गुलाब जामुन लोहे का फोटो देखने पे मिल रहा है लोहे के ऊपर एक जाली हमें देखने को मिल रहा है जो की जाली--

बहुत बड़े-बड़े पेड़ देखना तो मिल रहा है। पहाड़ के पीछे हमें बहुत सारे जंगल देखने को मिल रहा है। नदी में हमें पत्ता देखने--

ऊपर हमें आसमान देखने का मिल रहा है अ वहीं पे हमें पीछे में पहाड़ देखने को मिल रहा है।

कोट पहना हुआ है उसके नीचे हमें एक लाइट देखने को मिल रहा है।

हमें यहां पर एक खुला मैदान देखने को मिल रहा है।